पिक्चर देखते हैं जो लड़कियों के काम कर दिया है काम कष्ट कनी है बहुत सुंदर है काम का काम कर दिया है बहु --

उस के लिए --

एक रहितों का पाल्म दिया है बहुत बहुत सुंदर पपी पिक्चर है।

जो ऊपर पलासेस हैं बहुत बहुत सुंदर है बहुत पसंद है एंट्रिपास ।